इस चित्र में एक फार्च्यून एक दुकान दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारा सामान --

चद्दर नजर आ रहे हैं। एक स्टूल रखा हुआ है। छोटी-छोटी कुंडियां नजर आ रही हैं।

ऊ बसें खड़ी दिखाई दे रही हैं। लोग यहाँ इंतजार करते नजर आ रहे। एक बाइक भी खड़ी दिख रही है।